का बंबूओं वाले डं-डंडो से घेर के रखा हुआ है ताकि उसपे चढ़ सके।

इस तस्वीर में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की मशहूर --

सामने दुकान पे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग की टी-शर्ट --

कुछ नियम लिखे हुए हैं जो सबको मानने चाहिए आस-पास हम काफी सारे हरियाली और पेड़-पौधों को भी देख सकते हैं।

और डस्टबिन वगेरा भी रखा हुआ है और एक उध्यान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक हाउसिंग सोसाइटी वाली बिल्डिंग दिखाई दे री है जहा पे हम काफी सारे फ्लैट्स को देख सकते है।